पिंक एक ब्लू एक ग्रीन एक--

कॉफी शॉप दिख रहा हैं जहां दो लड़के बैठे हुएं--

इस घर को येलो ऑरेंज फूलों से डेकोरेशन --

सोफे के पीछे व्हाइट कलर के आस पास ब्लैक कलर के पर्दे लगे दिख रहे है।

जिस शोरूम के बाहर बहुत सारे डमी पीस --

हॉन भी रखे हुए दिख रहे हैं।

दोनों साइड एक वाइट कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

जिसके नीचे एक बैंक बनी हुई दिख रही है जिसके बाहर एक--

कंपनी दिखाई दे रही है जिसके बाहर एक--

बुलडोजर भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

खड़े दिखाई दे रही हैं इसके बाहर--